यह रेलवे ट्रैक दिख रहा है यहाँ लाइट के खम्बे दिख रहे हैं यहाँ रेल की पटरी दिख रही है यहाँ कई व्यक्ति दिख रहे हैं।

यहाँ पंखे दिख रहे हैं| यहाँ डेकोरेशन दिख रहे हैं| यहाँ कुछ पोस्टर दिख रहे हैं| यहाँ स्पीकर दिख रहा है| यहाँ बेंच दिख रही है यहाँ लाइट दिख --

यहां बाउंड्री दिख रही है । यहाँ पोस्टर दिख रहा है । यहाँ खंबा दिख रहा हैं ।

यह पिलर दिख रहे है |यहाँ बाउन्ड्री दिख रही है।